और इसमें वन टू थ्री फोर फाइव बेंचेज अवेलेबल है पर रो में।

इसके अंदर एक चेयर है और अंदर सारे सामान मिलता है वो एक ही वाल है।

उसके जस्ट राइट साइड में एक बुलेट की टायर नजर आ रही है वहां बुलेट भी खड़ी हुई है।

आप देख सकते हो बाहर भी इतने सारे लोग बैठे एक नकाब वाली आंटी फोन पे बात करते हुए जा रही--

पर फोर ए_सी लगाया हुआ है और इतनी सारी बाइक्स भी खड़ी है।

अंकल उसके डोर के पास खड़े है एक अंकल बाइक के ऊपर बैठे हैं।

ग्रीनरी के पास दो अंदर वाल जैसा है अंदर कैनल टाइप का है वो भी अवेलेबल --

यहां पर पलक का बाइक्स करके रिसेल है आह कंपनी है।

ओल्ड एंड न्यू कार बाइक अवैलेबल यहाँ पर होती है यहाँ पर तुम अपने लिए अवैलेबल कर सकते हो बाइक और कार किसी को भी चाहिए होगा तो।

एक आंटी खड़े है। बाजू में दो-तीन स्कूटियां खड़ी है।

बालकनी भी अवेलेबल है और विंडोस भी अवेलेबल है।

ये शादी का वो मंडप है जहां पर दूल्हा दुल्हन अक्सर फेरे लेते हैं।

और सामने आप देख सकते कि डैम है जहां से पानी फ्लो होता है।

क्रिश्चियन वाली प्लेस है क्योंकि हम देख सकते है की सामने वो प्लस साइन उनका ही होता है ओ भी बना गया--

हॉस्पिटल का नाम है सरदार अस्पताल गोपालगंज।

यहां पर गेमिंगजोन चल रहा है बीच मे तीन बॉटल्स रखी हुई है।

देख सकते है कि आप बैंगलो है किसी का और आजू बाजू पूरा बाउंड्री करके अंदर ग्रीनरी किया हुआ है।

यहां पर तीन अंकल इस कंस्ट्रक्ट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं।

ये पानी में जाने के लिए हम देखे तो ऊपर से एक सीढ़ी नीचे तक बनाई गई है।

जस्ट उसके पीछे हम देख सकते हैं कि ऑटो रिक्शा और उसके पीछे एक टेंपो टाइप है।

इसके जस्ट यहां पर राइट साइड में आप देख सकते हैं एक चेयर है चेयर के ऊपर कुछ कपड़े लटके हुए हैं।

आप देख सकते हैं एक साइड एक स्कूटी टी_वीए_स खड़ी है और दूसरे साथ एक टी_वी_एस बाइक खड़ी है।

आम देख सकते हैं राइट साइड में छोटासा भागा मे कार का भी नजर आ रहा है।

एक प्लेस हैं जहां पर लोग खाने आते है हम देख सकते हैं फ्रेंचराइज है सैंडविच हैं।

हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक सिलिंडर है वहाँ पर एक अंकल मेबी चाय बनाते हैं।

ये मेले वाली प्लेस है जहाँ पर आप देख सकते तीन चार बड़े बड़े चक डॉल्स हैं।

ये एक कैंपस जैसा लग रहा है जैसे कॉलेज में मोस्ट ऑफ कैंपस होते हैं उस तरह हम देख सकते हैं।

ये जो हम देख सकते की बाउंड्रीज के अंदर छोटे-छोटे ग्रीनरी ग्रासेस है।

और हम देख सकते कि वो ओपन हुए विंडो है तो और एक मेन एंटर --

इ खुले वादियो मे बनाया गया एक अच्छा सा सिनारियो है।

पीछे बहुत सारे ग्रीनरी टाइप के पूरा बाउंड्री भी किया गया है।

देख सकते हैं कि ये नदी का सीन है जहां दो शिप्स राइट साइड में एक हाफ शिप नजर आ रही है और दूसरी साइड में एक बड़ी सी शिप्स ।

और देख सकते हैं कि जिस लेफ्ट साइड में ब्राउन और वाइट कलर का वो कंस्ट्रक्ट किया है बिल्डिंग टाइप दो फ्लोर का --

हम देख सकते हैं यहां ब्लैक एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशंस दिया गया है।

ये ओपन ग्राउंड है जहां लोग क्रिकेट खेलने अक्सर आते हैं जो क्रिकेट के मेचिस होती है।

हम देख सकते हैं ये प्लेस है जहां पर हम लोटस उगते हुए देखते हैं।

ये ओपन प्लेस है पानी नदियों की जगह है और उसको पूरा बॉर्डर दिया गया हुआ है।

ये एक प्लेस है जहां पर हम देख सकते हैं बोहोत सारी वॉशिंग मशीन्स रखी हुई है।

जिनमें आप देख सकते हो कि आगे एक अंकल हैं और पीछे भी बहोत सारे अंकल हैं।

ये एक प्लेस है यहां पर हमें सारे फेस वॉश हो गए शॉप्स हो गए परफ्यूम्स हो गए।

प्लेस एक मंदिर की है जहां पर ऊपर एक रेड फ्लैग एक व्हाइट फ्लैग है।